सूरज उदय का समय है आसमान में लालिमा है।

कुर्ता पजामा पेहना हुआ है बगल में ऊपर छोटा सा टंकी रखा हुआ है पीला कलर का है काला कलर का टंकी --

चारों तरफ बहुत फील्ड दिख रहा है ऊपर आसमान दिख रहा है घर भी है मैदान हरा-भरा है दिखने में अच्छा लग रहा है।